ये बिलासपुर मे हैं ये बिलासपुर का हाई कोर्ट है यहाँ हाईकोर्ट वाला काम भी होता है यहाँ फूल है पौधे ऊपर नीला आसमान है बहुत ज्यादा सुंदर है बहुत अच्छा में भी पहली बार देख रही हूँ।

तालाब में शायद फूल खिले हैं कमल के फूल जो पत्ते होते हैं हरे हरे- वो दिख रहें हैं सीढ़ियां है तालाब में नहाए जाते हैं बगल में पेड़ है और तालाब में नहाया भी जाता है बहुत सारे पानी है बहुत साफ पानी है।